इस तस्वीर पर हमें बहुत सारे बिस्तर दिखाई दे रहे हैं।

हमें एक बंबू भी दिखाई देने को मिल रहा है।

इस तस्वीर पर हमें बहोत सारे किताबें देखने को मिल रहा है।

इस तस्वीर पे एक बड़ा सा मशीन है।

इस बंगला का पीछे में नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पर हमें एक कमरा दिखाया गया है।

बच्चे कुछ ड्राइंग बना रहे हैं।

इस तस्वीर पर हमे एक कमरा दिखाया गया --

इस तस्वीर पर हमें बहुत सारे लैपटॉप्स भी दिखाई दे रहे हैं।

नीला रंग का एक बोर्ड भी है जहां पर लिखा गया है फोर वन फाइव ।

और इस तस्वीर पर हमे वायर्स भी देखने को मिल रहे है और स्ट्रीट लाइट्स और--